और यह बड़े से कंटेनर में रखी हुई है और यहाँ छोटे-छोटे कंटेनर भी रखे हुए है जिसमें और दूसरी --

यहां पर बहोत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है जिसमें कुछ व्हाइट कलर की है ब्राउन कलर की--

ये वाइट कलर के बिल्डिंग पर सृजन का बैनर लगा हुआ है और यहां सामने की तरफ--

डांस सीख रहे हैं और ऊपर की तरफ यहां छत में व्हाइ--

रेड कारपेट बिछा है और सामने ग्रीन कारपेट है पीछे बहोत से व्हाइट रेड पर्दे हैं।

और बाहर की तरफ यहां पर कुछ बाइक खड़ी है सामने से एक रोड जा रही है।

इसमें एक डिजाइंस बनी है और एक लोहे का खंभा है आसपास बहुत सारे पेड़ हैं गोलाकार रास्ता है।

पोस्टर लगा है पूरा रूम ब्राउन कलर का है।

और इसके जो गेट हैं वो गोलाकार डिजाइंस में बने हैं ऊपर में कुछ--

येलो कलर की टेबल है जिस पर भी बहोत सारी कॉस्मे--

वो कहीं पर कुछ कुछ जगह पर पौधे लगाए ग--

यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने रेड शर्ट पहनी है एक महिला है जिन्होंने रेड साड़ी पहनी--

यहां एक व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने लाइट ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पेहनी है जो घूम रहे--

यहाँ पर एक रूम है जो यलो कलर का है और यहाॅं पर एक पोस्टर भी लगा है जो जो ब्लू कलर की शटर लगी हुई है और --

और कुछ लोग बैठे हुए है टेबल पर इनके सामने लैपटॉप रखा है।

बहुत से पौधे भी लगे हैं रास्ता है आगे जाने का वाइट कलर की डिजाइन है।